यहां पर तीन चार कैरेट रखें हैं।

उसके बगल में एक बाइक खड़ी है।

लाइटें जल रही है खूब सारी।

एक आदमी वहां पर खड़ा है और यहां जस्ट बगल में तीन चार डमी रखे हैं।

एक बेडरूम है यहां पर दो तख़त पड़े हैं।

बाइक के साइड में एक बाल्टी रखी है।

बेड के बगल में एक बोड लगा है और--

और कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हैं उसका कलर व्हाइट है।

और बगल में एक टॉवर भी लगा है।

जहां पर सामान मिलता है खाने का।

एक बड़ा सा पेड़ लगा है जिसके नीचे ग्रीन कलर के खंबें लगे --

पास में कुछ लोग खड़े हैं।

और दूर दूर में बहुत सारे लैंप पोस्ट लगे हैं।

पीछे कुछ बच्चे खड़े हैं उनके पीछे यीशु का लगा है।

गाड़ी लगे है कार खड़ी है।

इ कोई पुरानी जगह है जहां पर पुरानी इमारतें बनी हैं।

यह एक कंप्यूटर हॉल है यहां कंप्यूटर सिखाया जाता है।

टीचर के पीछे एक गमला रखा है।

बगल में एक बोर्ड लगा है।

एक आदमी आ रहा है वह उसके राइट में एक कैंटीन है जहां पर --

ये एक बिल्डिंग है यहां पर खूब सारी झालरें लगी हैं।

ये एक ऑपरेशन थिएटर है।

डॉग के पूंछ पर बैंगनी कलर लगा है।

कॉटन रखी है और कुत्ते के पास सीजर्स रखी है।